और इसको पहेले प्लेंथ बनाया ना जायेगा फिर इसमें मिट्टी डालाएगा फिर ऊपर छत बनाएगा और ये जब भवन बन जायेगा तो देखने में इसका बहुत ही अदभुत दृश्य होगा।

सभी तरह के गाड़ियाँ वगेरह जाती हैं और ये क्या ! ये यहाँ पे बकरी भी हैं और ये देखिए पत्थर --

और यहाँ पे कुछ लोग बैठ के लग रहा है । गहन मंथन विचार कर रहे हैं । जो कि कुछ करना चाह रहे हैं और ये देखिए --